इसमें सामने की तरफ एक पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ में पत्ते वग़ैरा कुछ नहीं है निचे एक सांप दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम है जिम काफी बड़ा है काफी सारे लोग इसमें जिम करते दिखाई दे रहै है निचे जमीन पर चटाई बिछी हुई हैं।

ये एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल मे नीले रंग की पिलर्स लगे हुए है सामने की तरफ काले रंग की--

पीछे की तरफ बड़े वाले पंछी दिखाई दे रहै है जो सफ़ेद रंग के है और पीछे की तरफ कुछ झाड़ वाले पेड़ दिखाई दे रहै है।

सामने की तरफ एक छोटी सी बच्ची और एक इंसान दिखाई दे रहा है पिछे एक टावर दिखाई दे रहा है साइड मे पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

--और कुर्सी के ऊपर दो तीन लोग बैठे हुए दिखाई दे रहै है सामने की तरफ एक इन्शान बाइक लेके खड़ा हुआ है।

इसमें सामने की तरफ बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है उस पर बंसल नर्सिंग होम लिखा हुआ है।

पीछे टावर भी दिखाई दे रहे है ऊपर की तरफ आसमान में बादल दिखाई दे रहे है और धूप निकली है।

इसके सामने की तरफ मैदान जैसा दिखाई दे रहा है जो की काफी पथरीला है क्योंकि उसमे काफी पत्थर दिखाई दे रहे है।